और एक वाइट कलर की बाल्टी रखी हुई है और एक फैन भी दिखाई दे रहा है।

और यहां पर लकड़ी काट कूट के बनाई जाती हैं यहां पर गोंद भी रखा हुआ है और आप देख रहे हैं लकड़ी से रिलेटेड जो भी सामान होता है।

ये एक पानीपत संग्राली है जहां पर आप देख रहे हैं--

आगे का जो फ्रंट है वो वाइट कलर का है पीछे का जो है वो रेड कलर का है।

और उधर देख रहे है आप सामने मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ कुर्सियां पड़ी हुई है।

छांव में और एक ट्रैक्टर भी दिखाई दे रहा है और उधर पेड़ भी खड़े हुए हैं हरे--

और एक तरफ ल लाल कलर का बोर्ड सा लगा हुआ है और दूसरी तरफ हरे कलर --

और साइड में आप देख रहे है जहां पर पार्किंग है वहां पर कुछ बाइक के भी खड़ी हुई है और नीचे से इसके कलर देख रहे हैं आप--

ब्रेकफास्ट भी और लंच भी और डिनर भी कर सकते हैं और यहां आप देख रहे है एक खाट भी पड़ी हुई है जिसपर एक आदमी पड़ा हुआ है।

उसपे शीशे ही शीशे लगे हुए है और इसके सामने के तरफ आप देख रहे है बगीचा है और पार्क है जहां पर देख रहे है पेड़ पौधे लगे हुए है।

यह एक शॉप है जिस पर लिखा हुआ है सैमसंग श्रीजी इलेक्ट्रॉनिक ।

भीमा सोनी सैमसंग अरुवा यहां पर आप देख रहे हैं एक आदमी खड़ा हुआ है।

और ये जींस भी पहनी हुई है इसमें ब्लैक कलर की पहनी हुई है और वो सारी यहां पर पेटी भी--

ये एक कार्टलैम अवे फैंसिंग पार्टनरशिप है जहां पर आप देख रहे हैं।

और यहां पर उसके बाद आप देख रहे हैं कुछ स्कूटी भी खड़ी हुई है और एक गाड़ी भी खड़ी हुई है जो रेड कलर की है।

यहां पर कैमरे भी लगे हुए हैं और लाइटे भी बहोत अच्छी लगी हुई है और अंदर ए_सी भी लगा हुआ है और--

यहां पर आप देख रहे हैं बाहर एक अ मगरमच्छ पड़ा हुआ है जो कम से कम दस बीस फिट का होगा।

और यह बिल्कुल ब्लैक है और यह बहोत ही खतरनाक जानवर है।

ये एक जिम है जिम आप देख रहे हैं बहोत सारे लड़के और लड़कियां काम कर रहे हैं।

और यहां आप देख रहे हैं लाइटें भी लगी हुई है और मुझे लग रहा है इसका आज जिम का नई जिम का उदघाट्न किया जा रहा है।

जो नीचे बैठे हुए हैं और छांव सेक रहे हैं और कुछ कुर्सियां पड़ी हुई हैं इन पे औरत--

और ये अंदर की साइड खड़े हुए हैं और दीवार की उस तरफ आप देख रहे हैं।

यहां पर आप देख रे है मैदान दिखाई दे रा है मैदान में छोटे और बड़े वर्क्स लगे हुए हैं।

ये आप देख रहे हैं एक दुकान है जहां पर बहोत सारे पाइप के टुकड़े टंगे हुए हैं।

यहां पर तीन चार लोहे की कुर्सियां पड़ी हुई है जो ब्लैक कलर की है और ये आदमी पता नहीं क्या कर रहा है एक टेबल पर कुछ रख रहा है शायद--

और एक आदमी बाहर खड़ा हुआ है और ये सर्दी सर्दी का टाइम है स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ये बहुत ही अच्छा--

और कुछ सिंगल भी खड़ी हुई है कुछ लोग पैदल जा रहे हैं रोड पर।

यहां पर देख रहे हैं नजारा सूरज छिपने को तैयार है तार ही तार नजर आ रही है और कुछ बिल्डिंग भी--

यहां पर आप देख रहे है यहां एक दो तीन लड़के बैठे हुए है ये बाल कटाने के लिए आए है सैलून में--

और यह सिर्फ घास खाता है किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है इसका मांस बहुत अच्छा होता है।

एटैची भी रखी हुई है पेटियां भी रखी हुई है और यहां पर संदूक भी रखा हुआ है।

हरा भरा मैदान है और यहां पर आप बैठ सकते हैं मजा भी ले सकते हैं।